इसमें बहुत सारे पेड़-पोधे लगे हुए हैं जोकि बहुत अच्छे लग रहे देखने में। इसमें एक मूर्ति स्टेचु भी है जोकि ब्लैक कलर का है और यहाँ पे बोहुत सारे पेड़-पोधे हैं। बगल में रेलिंग लगा हुआ है और बोहुत अच्छा है।

और इधर मिट्टी है जोकि भूरा रंग का है बहुत सारा घास-फूस उगा हुआ है यहाँ पे बांस का एक बाड़ी बना हुआ है और उसका बगल में फूल का पेड़ लगा हुआ है।